सभी तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहा हैं।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

लाइटों से पूरा सजी हुई है और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।

दो लोग हैं जो एकने मास्क लगाए रखी--

एक कागज को पकड़ कर रखे हुए हैं।

बहुत सुंदर प्लेन है।